ऊपर पंखे लगे हुए हैं। चर्च का रंग सफ़ेद है।

वह पुरुष वह महिलाएं मछलियाँ बेच रहे हैं।

इस छायाचित्र में एक बड़ी गाड़ी दिख रही है गाड़ी का रंग लाल है तथा दो व्यक्ति दिख रहे हैं ।

इस छाया चित्र में एक पुरुष एक गोल बॉल पर जिसकी जो बहुत बड़ी है।

उसने सफ़ेद कपड़े और लाल कपड़े कपड़े पहने हुए --

इस छाया चित्र में ऊपर बोहोत खुला आसमान है। नीचे काफी सारे वाहन खड़े हुए हैं। एक महिला फ़ोन पर बात कर रही है।

इस छायाचित्र में एक व्यक्ति मछली बेचने वाली दुकान के अंदर खड़ा है तथा उसके सामने बहुत सारी मछलिया पड़ी हुई हैं।

इस छायाचित्र में कुछ ब्यक्ति दिखाई दे रहे हैं सभी व्यक्ती मिस्त्री है जो किसी भवन निर्माण की छत पर कार्य कर रहे हैं।

छाका के ऊपर बड़ा नीला बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ महिलाएं उसमे खरीदारी कर रही हैं।

तथा उसके पीछे एक दुकान है। दुकान में कुछ लकड़ी का सामान पड़ा हुआ है।

इस छाया चित्र में तीन दुपहिया वाहन दिख रहे हैं एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

तथा चट्टान से छोटे-छोटे पौधे उग रहे हैं।

इस छायाचित्र में एक नाव नजदीक दिख रही है वह एक नाव दूर दिख रही है नजदीक दिखने वाली नाव पर दो --

तथा कुछ व्यक्ति लकड़ी की बनी बेंचों पर बैठे हुए हैं। चर्च का रंग सफ़ेद है।